इसके आजूबाजू बहुत घास और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए है ये डाकघर सफ़ेद और हरे कल कलर का है।

दो आजूबाजू की प्रतिमा कलरफूल है जब की एक गोल्डन कलर की है इसके बाजू मे बोहोत हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

जैसा की आप देख सकते है यहा पर बहुत प्यारा चर्च है इस चर्च मे क्रॉस का निशान लगा हुआ है और इसको फुल्लो से डेकोरेट किया गया है इसके सामने जीजेस की काच मे मूर्ति भी बनी हुई है।

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर दो मंजिल बहुत प्यारा मकान है ये मकान नील और लाल कलर का है इस मकान के गेट मे तोरण भी लगे हुए है।

परात मे बहुत सारे बैंगन रखे हुए है और यहा पर भट्टी पर कुछ खाना बनाया जा रहा है।